सामने की तरफ एक टेबल भी रखा हुआ है जिसके ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है।

सामने की तरफ कई सारे बेल्ट भी दिखाई दे रहे हैं।

पीछे के तरफ एक जमीन भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर कई सारे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं जो क्राफ्ट से कुछ बना रहे हैं।

दुकान के सामने एक टेबल दिखाई दे रहा है।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

सब आदमियों ने व्हाइट रंग के कपड़े पहने हैं सबके हाथ में एक एक कैंडल भी दिखाई दे रहे हैं।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

पीछे की तरफ पिंक कलर के दीवार पर दिखाई दे रही है।

नीचा की तरफ थोड़ी मोड़ी गिट्टियां दिखाई दे रही हैं।

बगल में एक और दरवाजा दिखाई दे रहा है।

नीचे की तरफ एक फ्रीजर भी दिखाई दे रहा है।